अध्यापक के लिए एक अलग से कुर्सी है और एक टेबल रखी हुई है। एक डिस्प्ले बोर्ड है नीले रंग का जिसपे सफ़ेद रंग के कागज लगे हुए हैं।

यह चित्र देखकर लग रहा कि यहाँ कोई नृत्य गायन सामूहिक तौर पर किया जा रहा है।

लाल रंग के दिल बने हुए हैं। दूरी पर एक काले रंग का स्कूटर दिख रहा है और सड़क के बाहर दूरी पर--

इस चित्र में युवतियाँ एक मंच पर डांस की प्रस्तुति दे रई हैं।

रंग की पटियां भी हैं सीधी-सीधी नीले रंग का फर्श है उसमें --

एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने सफ़ेद रंग की शर्ट पेहनी है।